चित्र में एक बैंक बनी हुई है जो की बहुत बड़ी हुई है जो की बहुत बड़ी है उसका रंग नीला साथ ही इसके निचे के ए _ टी_एम बनी हुई है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की नीले रंग का है साथ ही इसके बहार बहोत लंबी लाइन लगी हुई है ।

जो की बड़ी सी है | उसके नीचे कई सारे लोग खड़े हैं साथ ही एक प्लेन खड़ी है जो की सफेद रंग की है | उसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

इस चित्र में एक नदी बनी हुई है जो की काफी बड़ी दिख रही है साथ ही बहुत साफ भी हैं जिसके चारों तरफ बहोत सारे घर बने हुए हैं और बहोत बड़े - बड़े से पेड़ भी लगे हुए हैं जो की बहोत हरे- भरे से दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक मैदान जो काफी बड़ा और सूखा है जिस के चारो तरफ पेड़ लगे हुए है जो की बहुत हरे - भरे से दिख रहे हैं सामने एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है जो काफी बड़ी हैं उसके बगल में एक स्टेचू बना हुआ है जो की सफेद रंग का हैं।

--त्र में एक कमरा है जिस का रंग सफेद हैं जिस के उपर लम्बी - लम्बी लाइटे लगी हुई हैं साथी सामने एक दुकान बनी हुई जिस पर खाने पिने के सामने मिल रही हैं उनके बगल में एक व्यक्ति बैठे हैं।

इस चित्र में एक दुकान बनी हुई है जो की बहुत बड़ी हैं जिसके दरवाजा शीशे के बने हुए है साथ ही इसके ऊपर कई सारे फूलों के मालाएं लगी हुई है जो की नारंगी रंग की है साथ ही इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की काले रंग का है साथ ही उसमे कई सारी लाइटें लगी हुई हैं।

सफेद रंग की बस भी खड़ी हुई हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़े - बड़े से पेड़ लगे हुए हैं और असमान बहुत नीली और सफेद दिख रही हैं।

चित्र में एक रोड बनी हुई हैं जो की काफी लम्बी हैं रोड दाये साइड बहोत बड़े - बड़े से पेड़ लगे हुए हैं साथ ही स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं जो की काले रंग की हैं।

साथ एक म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ है। जो की काले रंग का है साथ ही सामने एक गेट बनी हुई है जो की काले रंग की है। सामने कई सारे बच्चे डांस कर रहे है और एक लड़की खड़ी है।

--त्र में गेट बनी हुई हैं जो की काले रंग की है साथ ही लोहे की हैं उसके बीचो बीचो एक बोर्ड लगी हुई है जो की नील रंग की हैं साथ ही उसमें ताला भी लगा हुआ हैं।

एक रोड है जो की बहुत लम्बी है रोड के बाये साइड एक घर बनी हुई हैं जो की गुलाबी रंग की हैं उस के ठीक दाय तरफ दो तीन फुल लगे हुए है और साथ ही कार है जो की सफ़ेद रंग की हैं।